यहां एक शॉप है शॉप के अंदर बहोत सारे लेडीज के सा कपड़े है ऊपर ए_सी भी है छोटे बड़े सबके कपड़े--

एक रोड है बहुत बरा एक बहुत बड़ा गेट भी है गेट के उस पार कुछ बना हुआ भी है।

गेट के इस साइड में एक कुछ तो दुकान है वहाँ पे बैनर --

रोड है रोड के बाजू में गाड़ियाँ लगी हुई है बहुत सारी लाइट का फोकस आ रहा है रोड सब खाली है सिर्फ गाड़ियाँ खड़ी है बाजू में।

यहां एक हॉल है हॉल में बहोत ही अच्छा डेकोरेट किया गया है फूलों से बहोत ही अच्छा व्यू है फूलों से इतना सजाया गया है उसको हॉल को।

ये सब्जियों की दुकान है यहां पे बहोत सारी सब्जियां है शिमला मिर्च है भिंडी है ककड़ी है गाजर है बैगन है बहोत सारे चीजें हैं।

यहां पे बहोत सारे टायर रखे हुए हैं उसके बाहर बहोत सारी बाइक खड़ी है बाजू में दुकानें हैं लाइन से--

उसके बाजू में गाड़ी खड़ी है गाड़ी के सामने एक मैदान है मैदान में झूला है गार्डन है।

एक छोटा-सा लकड़ी से बना हुआ होटल है रात का टाइम है लाइटिंग से उजाला किया गया है लाइट का फोकस है यहाँ पर।

रोड पे एक आदमी चल रहा है कोई साइड में खड़ा है एक बाइक पर दो लोग जा रहे हैं।

मैदान के आजू-बाजू में सब यहाँ पे पेड़ लगे हुए हैं बहुत सारे एक साइकिल मैदान में खड़ी है और पत्थरें बाजू में--

एक एरोप्लेन लैंडिंग में खड़ा है कुछ पब्लिक यात्री यहाँ नीचे उतरे हुए हैं बाजू में बहुत ही अच्छे पेड़-पौधे लगे हुए बहुत ही अच्छा व्यू है।

एक कोई तो कीर तक करा है व्हाइट कपडे मे पहेनकर।

यहां पे बहोत ही अच्छा झरना बह रहा है। पत्थरो से होके पानी गुजर रहा है बाजू मे बहोत सारे पेड़ है। पौधे है बहोत ही अच्छा व्यू है।

यहां पे बिल्डिंग बनायी जा रही ईंटों से दीवारें खड़ी कर रहे हैं यहां पे एक आदमी काम कर रहा है पीछे कुछ आदमी लोग खड़े हैं।

एक बहुत बड़ा मैदान है हरा-भरा मैदान है पेड़ है उसके उस बाजू बहुत सारी बिल्डिंगें हैं लाइन से खड़ी है बिल्डिंगें।

कैमेरे के जब फोकस कर रहा है उसके पीछे एक आदमी खड़ा हुआ है।

पे बहोत सारे लोग आजू बाजू में खड़े होके देख रहे है पेड़ पौधे भी है साइड --

यहां पे जनरल स्टोर है जनरल स्टोर के अंदर बहोत सारे सामान रखे हुए है साबुन है कि तेल है बहोत सारे सामान लाइन से रखे हुए हैं।

एक बहुत बड़ा मैदान है मैदान के पीछे बहुत सारे पेड़ है।